यह एक पहाड़ी इलाका है। यह--

लगाए गए हैं यह देखने में बहुत अच्छे लगते --

ये हैं यहाँ कोई फंक्शन --

बड़े है इस दूकान में एक मूर्ती --

यह एक सैलून है यह सैलून --

बना कटाने दाढ़ी बनाने के लिए --

यह एक नेताजी का पुतला है।

ये वह इनके पुतला बनाये --